सामने एक छोटा-सा एक गमला है जिसमें एक छोटा-सा पौधा लगा हुआ है और एक दीवाल है जो कि चारों तरफ से बिल्डिंग --

साइड में कुछ पेड़ पोधे हैं बड़े-बड़े और साइड से कुछ मिट्टी हैं। सामने एक पक्की सी सड़क टली हुई है। ऊपर खुला आसमान है। सामने एक इमेज लगी हुई है।

सामने एक बड़ी सी इमारत है जो कि पत्थरों से बनी हुई इमारत है। उसके चारों और अ- उसके चारो ओर कुछ पेड़ पौधे हैं कुछ हारियाली छायी हुई हैं।

इसमें एक बड़ा सा स्वीमिंगपुल है जिसमें से पानी भरा हुवा है पीछे कुछ इमरत बनी हुयी हे खाफी ओर खुच पेड पोधे लगे हुए है आसपास कुछ घास पड़ा हुआ है और बडा बड़ा घास खड़ा हुआ है।

सामने एक सलून है जिस पर एक खुर्शी जिसपे एक नील कलर की शर्ट पहने एक लड़का बैठा है ऊपर की तरफ बाल है पीछे की तरफ एक रेड चेक में एक शर्ट है जो की एक आदमी है जो की अपने बाल बना रहा है लड़का के बाल काट रहा है।

सामने एक बड़ा-सा एक चारों तरफ से जंगल है उसमें कुछ पेड़-पौधे लगे हुए हैं और कुछ अ-अ-ओ कुछ हिरन डले हुए हैं।

एक ग्राउंड है जिसमें आगे एक साइकिल रखी हुई है पीछे च कुछ इमारते बनी हुई है।